एक बड़ा-सा मैदान है जिस मैदान मे हरे घास जमे हुए हैंऔर जा और मैदानों में एक जाली लगे हुए है जिस जाली के अंदर एक हिरण हिरण हिरण है और अगल-बगल हरे-भरे पेड़-पौधे भी हैं।

और घास लगी हुई है और घास में पानी का पाइप पड़ा हुआ है और बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए है।

ये बड़े-बड़े हरे पेड़ लगे हुए हैं ऊपर आसमान दिख रहा हैं और बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे है और तार दिख रहे है।

यहां पर झील दिख रही है झील में पानी हरे कलर का है और किनारे दिख रहे हैंकिनारे में मिट्टी दिख रही है और पीछे पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ पर पेड़ लगे हुए हैं।